और बहुत सारा पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

निचे की गेट को गेंदा फूल से सजाया गया है।

जो सफेद और आसमानी रंग का है यहां की दीवार को सफेद रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर एक गाड़ी लगा हुआ है गाड़ी को पड़कर एक बच्चा खड़ा है।

बहुत सारा पेड़ पौधा हैजिसमें दो तीन नारियल का पेड़ पौधा है।

पेट्रोल बेचने वाला हर मशीन के आगे में यूनिफार्म पहन कर खड़ा है।

कुछ आते हुए कुछ जाते हुए बाइक दिख रहा है। एवं कुछ ब्यक्ति है जो कि आते जाते हुए दिखाइ दे रहा है।

यह एक स्कूल है जिसका नाम है ग्रीनविच स्कूल इसको गुलाबी रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारा महल दिखाई दे रहा है लेकिन सुबह सुबह का टाइम है सब क्लोज है।

यह एक झरना है जो कि ऊपर की ओर से पानी पत्थल के सीना को चीरते हुऐ नीचे की ओर आ रहा है।

इस फोटो में एक पंडाल दिखाई दे रहा है जो कि लाइटिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था है।

यहां पर एक लड़का बैठा हुआ हैं। जो कि काले रंग का टीशर्ट और काले रंग का पैजामा पहना हुआ हैं।

यहां पर तीन गेट दिखाई दे रहे हैं जिसमें की दो ग्रिल है।

साइड में बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है।

एक साइड में तराजू रखा है तो दूसरी साइड में सफेद रंग का बाल्टी रखा हुआ है।

शीशा के अंदर बहुत सारा कान वाला रखा हुआ है जिसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है।

दोनों मोफ़लर लगा के बैठे हुवे है यहां पे बहुत मरीज खड़ा है जो हाथ में चिठ्ठा लेके खड़ा है।